इसके साइडो में बहुत सारे बाहर से पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

एक लड़का एक दुकान में जिसका वॉल का कलर येलो है अपने हाथ पीछे की तरफ सिर पे बंधे हुए हैं और दूसरी दुकान में एक लड़का खड़ा हुआ है।

इन बॉक्सेस पे वाइट कलर के आधे बाक्सेस पे स्माइल लिखा हुआ है और आधे पे के बी सी लिखा हुआ है।

ये एक ऑफिस जैसा लग रहा है जिस पे एक डेस्क भी बना हुआ है।